कुछ बैलून क्रीम कलर के हैं कुछ पीला कलर के हैं।

वही डेकोरेट जगह एक आदमी भी है उसके गोद में बच्चा है।

बहुत सारा पोस्टर भी चिपकाया हुआ है।

यहां तिरंगा झंडा फहर रहा है।

और एक आदमी डब्बा में कुछ लेकर खड़ा है नीचे के और पांच छह महिला भी दिख रही है।

ट्रांसफार्मर के सामने भी एक आदमी है।

व्हाइट कलर का टोपी पहना हुआ है।

सामने में कुछ मकान भी दिख रहे हैं जिसमें बांस भी बहुत सारा बांधा हुआ है।

यहां सैलून है सैलून के अंदर एक चेयर है जो ब्लू कलर का है।

रैक के अंदर कुछ पर्स रखे हुए हैं।

बहुत सारा बैलून लगा हुआ है कुछ रेड कलर का --

उसमें एक मुर्गा है गमला में कुछ पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे।

यहां पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग को पूरा पेंट किया हुआ है।

यहां पर लकड़ी का दुकान है बहुत सारा लकड़ी का पटरिया भी रखे हुए हैं।

कुछ कैंपस है बाउंड्री दिया हुआ है कैंपस के अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं।

जैसे प्लांट हो हरा भरा पूरा पेड़ पौधा है।